इस स्टेशन के ऊपर एक एल.ई.डी. लाइट भी लगी हुई है इस स्टेशन के बाहर एक लोहे की टेबुल लगी हुई है।

ऐसा लग रहा है कि वो अदमी अपने खेत को जोते हुए नजर आ रहा है पॉल मै एक इलेक्ट्रिक पॉल लगा हुआ है।